--है और एक हाथे बना हुआ है जिसकी सूँ पे ग्रीन कलर का निशान पान जैसा बना हुआ है ऊपर में पेड़ दिख रहे है और पीछे में ए बिजली के खम्भे दिख रहे है और आसमान नजर आ रहा है पीछे में पिंक कलर की कुछ बू-बिल्डिंग दिख रही है।

अ लोहे की जंजीरों से पकड़े हुए हैं और --

दुकान के ऊपर तार नजर आ रहे हैं और एक डिश का एंटीना लगा हुआ दिखाई देख दे रहा है और कुछ छोटे छोटे पेड़ हैं ।

जो की कुछ बिल्डिंगो पर लगे हुए हैं। एक बिल्डिंग है जो ऑरेंज रेड और वाइट कलर की दिखाई दे रही है जिस पर पेंट है। नीचे में पेंट पिंक कलर का दिखाई दे रहा है।

जो ब्लू और वाइट कलर में लगे हुए है दुसरे तरफ तिरंगे झंडे के अ पिल्लर टावरनुमा बने हुए दिखाई दे रहे है एक व्यक्ति इस तरफ आता हुआ दिखाई दे रहा है आसमान दिख रहा हैं और पेड़ दिख--

यहाँ पर बहुत सारी ऑटो ऑटो ओ साइकिलें खड़ी हुई हैं और ऊपर में बुलू और वाइट कलर के रेड कलर के ग्रीन कलर के लिखे हुए बहुत सारे |

है दिख रही हैं जिस पर नीचे हरा और नारंगी रंग का छोटा-छोटा पेंट बना हुआ हैं और एक तरफ में ब्लू कलर का पेंट दिख रहा हैं और आसमान दिख रहा।